और लाइटे बहुत सारी लगी हुई हैं। बहुत सारी एक दीवाल पे बहुत सारी लगी हुई हैं। कुछ खम्भों से जैसे बंधे हुए कुछ लगे हुए हैं और इसमें जो बाउंड्री खींची हुई उसमें पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

ये नम भोलेनाथ की शिवलिंग शिवलिंग बनी हुई है । शिवलिंग के आगे ना नादिया जी बैठे हुए हैं और उसके आगे अलमारी बनी हुई है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश भगवान भी बैठे हुए हैं।

ल ल लोहे की जाल जैसा बना हुआ है और नीचे ईटों के जैसा पना बना हुआ है | इसके आगे--

आगे आगे कुछ पत्तियां नजर आ रही है सुखी झाड़ वाड़ नजर आ रहै है एक पेड़ भी जो समुद्र के वजह से हिल रहा है।

यह कहीं के पहाड़ का मंदिर जैसा लग रहा है इसमें जो जीने बने है बहोत सारे जीने दिखाई पढ़ रहे हैं और इसके पीछे जो रेलिंग सी बनी हुई है वह भी जीने की तरह बनी हुई है कुछ ईंटे खुली हुई दिखाई पड़ रही हैं और --